यहां पर टी_वी भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक अ योगा क्लब है और बहुत सारे लोग योगा कर रहें हैं बहुत सारी लाइट्स भी जल रही है।